बॉउंड्री के पीछे की तरफ एक सफेद रंग की इमारत है जो मस्जिद जैसा लगता है।

दूर में एक ब्रिज नजर आ रहा है और उसके पास एक बस भी दिख रहा है मंदिर के के पास एक लैंप स्टैंड भी है।

यह एक शॉप का फोटो है जिसमें दर्पण दिख रहा है और दर्पण में ही लोगों की के इमेज नजर आ रहे हैं।

इससे ऐसा लगता है ये एक नाइ की दुकान है नाई अपना काम कर रहा है।

यह एक जिम का फोटो है सामने की दीवारों पर दो बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं और बहुत सारे वर्किंग एक्सरसाइजिंग टूल नजर आ रहे हैं।

यह एक क्रिश्चियन फंक्शन का फोटो नजर आ रहा है जो इसमें एक बड़े से हॉल में एक तरफ पादरी खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं।

यह एक पार्किंग प्लॉट का फोटो है जिसमें कुछ गाड़ियां लगी हुई है उसमें टेंपो भी है और दो फोर व्हीलर सफेद रंग की है एक शायद ब्लैक कलर के है।

साइड के सेल्फ पर चॉकलेट्स और जूस के डब्बे भी है।

यह एक वेटिंग रूम का फोटो दिखाता है जैसे किसी डॉक्टर के क्लीनिक में जाके बैठना हो उसके लिए।

सोफे का कलर ब्लू है और येल्लो पीछे दीवार पर कुछ कुछ स्टिकर लगे हुए हैं।

इसके ऊपर कोर वैल्यूज लिखा हुआ है और एक स्टीकर पर ये भी लिखा हुआ है कि पेशेंट फर्स्ट इससे पता चलता है कि डॉक्टर की क्लीनिक है।

इसमें एक रोड नजर आ रहा है रोड के दूसरे तरफ बहुत सारी फोर व्हीलर नजर आ रही है जिसमें नए और पुराने और अलग अलग रंग की गाड़ियां दिखती हैं।

और मौसम काफी साफ दिख रहा है मिट्टी देखकर रेती देखकर ऐसा लगता है जैसे लहरें अभी ही यहां से होके गुजरी है।

यह एक चॉकलेट शॉप का फोटो है जिसमें बहोत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स भी दिख रे है।

पीछे की तरफ शायद एक दरवाजा है जिसपे फूलों के बहोत सारे प्रिंट्स बने हुए हैं।

यह एक घाट की तस्वीर है जिसमें एक नदी है जो काफी चौड़ी तो नहीं छोटी सी नदी जा रही है।

नदी के ऊपर नदी से ऊपर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी है काफी जगह साफ सुथरा दिख रहा है सीढ़ीओ से चढ़कर रोड पर जाया जा सकता है।

नीचे मे उसने ब्लू कलर का जींस है और उसके हाथ में एक किताब है जिसके ऊपर एवरी मेंस वार लिखा हुआ है।

यह एक हॉल का फोटो है और सामने की तरफ एक स्टेज बना है।

इस फोटो में एक रूम के अंदर के एक कबोर्ड का तस्वीर नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक शेड का फोटो दिख रहा है जिसके नीचे एक बाइक खड़ा है और एक स्कूटी खड़ी है।

एक फोर व्हीलर का भी थोड़ा पार्ट दिख रहा है जो शायद सफेद रंग का है।

यह एक इलेक्ट्रिक बा टू व्हीलर का शोरूम है जिसमें बहोत सारे टू व्हीलर्स है।

इसमें एक रोड का दृश्य दिख रहा है जिसमें एक टेंपो नजर आ रहा है।

अंदर की ओर थोड़ा दूर पर बिल्डिंग नजर आ रहे हैं काफी पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह किसी फंक्शन के डेकोरेट किए हुए स्टेज का फोटो है जिसपे दो हार्ट शेप में अ बना हुआ है फूलों से उसे सजाया गया है।

यह एक फैक्ट्री जैसा मालूम होता है जहां पर पंखे बन रहे हैं पर उन पंखों के ब्लेड्स चार से पांच हैं।

यह एक पार्किंग प्लॉट का फोटो दिख रहा है नीचे रेत दिख रहा है इससे ऐसा लगता है की यह बीच का एरिया है।

उसके थोड़ी दूर पर एक सफेद रंग की कार नजर आ रही है दूर में एक अ बड़ा सा पेड़ भी दिख रहा है।

यह एक सेनेटरी शॉप का फोटो है जिसमें डिफरेंट टाइप के कम बोड्स दिख रहे हैं।

सबसे ऊपर मंदिर के ऊपर एक माँ लिखा हुआ है लाल रंग का बड़ा सा मंदिर की दीवारें पीले और लाल रंग की दिख रहीं हैं।

एक बड़े से हॉल का फोटो है जिसमें चारो तरफ साइड से टेबल्स लगे हुए हैं।

टेबल्स के एक तरफ सोफा बना हुआ है और दूसरे तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं।

लाल रंग की ब्लू रंग की और उसके पीछे मे एक सफेद रंग के कार नजर आ रही है।

गाड़ियां नई है और काफी लग्जरियस भी नजर आ रही है।